ये एक बोर्ड है जहां पे लेफ्ट साइड में लॉ --

कोऑपरेटर सोसाइटी लिखा हुआ है हाउसिंग सोसायटी लिखा हुआ है।

ग्राउंड के आगे फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं ग्राउंड के --

इंसान ने ऊपर कैप पहनी हुई है और पीछे बहुत से लोग काम कर रहे हैं।

लेफ्ट साइड में बहोत सी कुर्तियां दिख रही हैं राइट साइड में--

पिछे बिल्डिंग्स हैं प्लेग्राउंड के आसपास पेड़ हैं।

ये एक शॉपिंग स्टोर जैसी दिख रही है।

ये एक अ गांव का सीन है जहां पे --

ये पत्थरों के बीच में दो लोग हैं।

अ पीछे दवाइयां लिखी दवाइयां रखी हुई है।

ये एक राधा कृष्ण की मूर्ति है जिसमें --

बना हुआ है जिस पर बबल में लिखा हुआ है।

और उसके आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है।

पीछे वेटलिफ्टिंग की मशीन देख सकते हैं।

और एक आदमी ट्रेडमिल मशीन पर चल रहा है।

और उसके आगे एक स्कूटी है जिस पे दो लोग बैठें है।

एक आदमी जिसने क्रीम शर्ट पहनी है और एक औरत जिसने ब्लू साड़ी पहनी--

और उसके आगे बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इकट्ठा हुए है बीच में बहोत सारे पेड़ भी हैं।

सब्जियां रखी हुई है और लोग--

अपने व्हीकल के साथ उन सब्जीयों को खरीद रहे--

यहां पर एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे बहोत सारे बोर्ड्स है ऊपर ओम आयु केयर एंड --

एक गेट बना हुआ है ब्लैक कलर का और बीच में जाने का पैसेज भी है।

पेड़ पौधे हैं एंड काफी हरे भरे --

यह एक कंस्ट्रक्शन एरिया है यहां पे--

बहोत सारे पिलर्स और एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में है अं --

हर फ्लोर पे चार खिड़कियां लेफ्ट साइड पे और चार खिड़कियां राइट साइड पे दिख रही है।